कंप्यूटर का बॉक्स रखा है लैपटॉप का चार्ज है।

जिसके ऊपर बहुत सारे पोस्टर है जिसके ऊपर कुछ तान्या कुछ लिखा है।

एक ब्लू कलर का टेबल है।

पिक्चर में एक है जिसके दोनों तरफ रेलिंग लगी हैं उनके आसपास पेड़ पौधे लगे हैं।

डालियां के अंदर पेपर बिछाया है उसके ऊपर आ बहुत सारे फल रखे हैं।

अंदर कुछ आदमी खड़े हैं कुछ महिला भी खड़ी हैं और कुछ पोस्टर डिब्बे बनाके--

में एल_आई_सी केयर एल_आई_सी म्यूचुअल फंड का दुकान दिख रहा है।

ऑफिस का बिल्डिंग सफेद कलर का है इनकी खिड़की ब्लू कलर से पेंट की गई है।

सा पोस्टर लगा है उसके ऊपर वाहन कुछ लिखा है बीमा लिखा है बहुत सारे टाइल रखे है।

जो ब्लैक डिज़ाइन बनाया है उसके बाहर बहुत सारे कूट रखे हैं।

बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं एक अपाचे बाइक लगा हुआ है।

बिल्डिंग है इसके ऊपर कोचिंग वोचिंग का दुकान दुकान का पोस्टर लगाया है एक सैलून का पोस्टर लगाया है।

रोड में बहुत सारे गाड़ियां दिख रहे हैं किनारे में बहुत सारा बाइक लगे हैं एक आदमी साइकल दिख रहा हैं।

दो आदमी खड़े हैं एक आदमी ने सफेद रंग टीशर्ट पहना है।

फोन पकड़ा है नीचे टाइल्स दिख रहा है।

तस्वीर में सैमसंग सैमसंग मोबाइल का केयर दिख रहा है।

ए_सी दिख रहा है एक पंखा है एक एक्वेरियम दिख रहा हैजिसके अंदर मछली कट दिख रहा है।

बहुत सारे बिल्डिंग दिख रहे हैं जो सफेद कलर के हैं उसके आस पास बहुत सारे पेड़ हैं।

एक महिला बैठी दिख रही है जो साड़ी पहने हुई है।

के पोल दिख रहा है रेलिंग है।

जे बहुत सारे टूटे टूटे हुए ईंटे के बिखरे पड़े हैं।

इसमें बहुत सारे फूल बिखरे हैं बहुत सारे प्लास्टिक बिखरे हुए हैं झोले रखे हैं।

एक आदमी ने गमछी पहना हुआ है एक आदमी ने सफेद रंग का शर्ट पहना है एक आदमी ने

सामने कंप्यूटर दिख रहा है जिसे सबने लगाया है।

ऊपर बड़ा करकट लगा है जिसमें दो व्हाइट लाइट जलता दिख रहा है।

करकट सफेद कलर का है आसपास छोटा करकट लगा है जो ब्लू कलर का है।

क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बेंच हैं जो लाल कलर से पेंट किए गए हैं।

एक बोर्ड दिख रहा है जो सफेद कलर का है।

दीवाल हरे कलर से पेंट किया गया है लाइन का बोर्ड दिख रहा है।

और व्हाइट लाइट जल रहा है खिड़की है टाइल्स लगा है खिड़की भूरे कलर से पेंट किया गया है।